सामने एक डैम बना हुआ है डैम में एक बोटिंग रखी हुई है बोटिंग नाव रखी हुई है उसके दूसरी तरफ ऊँची बिल्डिंग बनी हुई है।

सामने एक चर्च दिख रहा है चर्च में से एंड बड़ा-सा गुंबज बना हुआ है एंड चर्च के सिम्बॉल्स बने हैं सामने एक गार्डन है पेड़ लगे हुए हैं और आसमान दिख रहा है।